मौझे फोटो में एक कार दिख रही है और एक बैंक भी देख रही है जिसका नाम यूनियन बैंक है। यहां पे बहोत सारी--

मुझे यह फोटू में बहोत सारे इंसान नजर आ रहे हैं और ये एक दीवाल पर व्हाइट कलर का पेंट --

मुझे इस फोटो में एक चेयर दो गमले और बहुत--

बहोत एक टप में बहोत सारी मछलीयां भी भरी हुई हैं और यहां पे बहोत सारे ऑटो भी दिख रहें हैं और मछलियों के फोटो भी कुछ लोग मछलियों के फोटो भी खींच रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारे बलून नज़र आ रहे हैं जिनका कलर ऑरेंज वाइट ग्रीन है।